यह इमेज एक बस स्टेशन को दर्शा रहा है जहाँ यात्री गण खड़े हुए है।

यह इमेज एक बहोत ही सुंदर हिल स्टेशन को दर्शा रहा है।

आप अपनी छुट्टियां बहुत ही आनंद के साथ बिताते है।

जहाँ एक शिक्षक अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ उन्हे नृत्य की शिक्षा दे रही है।

यह इमेज एक बौद्ध पीठ को दर्शा रहा है जहाँ बहोत सारे बौद्ध बैठकर अपने पाठ को कर रहे है।

यह इमेज एक बहोत ही सुन्दर पर्वत को दर्शा रहा है।